इसके बगल के बगल में कांच के डब्बे में बहुत सारे चांदी के भगवान बनाए गए है।

उसके ऊपर टिशू पेपर भी रखे हुए हैं।

यहां सामने में कुछ दारू की बोतलें भी रखी हुई है।

यहां सामने में कुछ गाड़ी दिखाई दे रहे हैं जैसे मोटरसाइकिल और एक स्कॉर्पियो भी दिखाई दे रहा है।

यहां सामने में एक गड्ढा दिखाई दे रहा है जिसमें कुछ पानी भी है।

उसके बगल में बहुत बड़े बड़े चट्टान और छोटे छोटे पत्थल दिखाई दे रहे हैं।

दो सफेद कलर के दिखाई दे रहे है यहां सामने में दो आदमी भी दिखाई दे रहे हैं।

यह एक ग्राउंड का चित्र है यहां सामने में एक आदमी दिखाई दे रहा है।

घर के सामने कुछ बोर्ड भी लगे हुए हैं जो ब्लू कलर के दिखाई दे रहे हैं।

यहां सामने में ढलाई का काम चल रहा है यहां पर कुछ लेबर दिखाई दे रहे हैं।

इसके बगल में कुछ घर भी दिखाई दे रहे हैं।

इसके ऊपर लिखा हुआ है गांधी नगर हॉस्पिटल ।

यह एक हॉल का चित्र है यहां सामने में काउंटर बना हुआ है।

यह एक मंदिर का चित्र है यहां सामने में बहुत सारे गुंबज दिखाई दे रहे है।

नीचे में बहुत सारे भक्तगण दिखाई दे रहे हैं जिसमें से कुछ औरतें और कुछ बच्चे और कुछ बुजुर्ग आदमी भी दिखाई दे रहे हैं।

नीचे में बहुत सारे फोटो भी बने हुए हैं।

सामने में दो इमोजी स्टीकर भी दिखाई दे रहे हैं।

सामने में कुछ अतिथि आए हुए हैं।

सामने में कोई ठेला गाड़ी भी लगा हुआ हैं।

इसके बगल में एक बाटा का कंपनी का चप्पल दुकान दिखाई दे रहा है।

सोफे के ऊपर कुछ ताकि रखे हुए हैं जो पीला कलर का दिखाई दे रहा है।

यहां सामने में एक गौशाला दिखाई दे रहा है।

सभी गाय लगभग काली और सफेद दिखाई दे रही है।

सामने में ओड़ी के जैसा बना हुआ है।

घर के सामने भास्कर ओम लिखा हुआ है।

सभी मछलियां अलग किस्म के दिखाई दे रहे हैं कुछ छोटे तो कुछ बड़ी मछलियां है।

और टोपी और चश्मा लगाया हुआ है।